इस पिक्चर मे एक डॉक्टर साहब गले में आला डालके बैठे हुए कुर्सी पर हैं।

पीछे की और कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

जिसमें एक लाल रंग की ट्रेन नजर आ रही है।

इस पिक्चर में एक सफेद रंग का बंगला बना हुआ दिखाई दे रहा है।

एक केतली रखी हुई है और पानी की दो बोतल भी रखी हुई दिख रही हैं।

जिसमें बहुत सी कार और कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में कुछ मिस्त्री दिखाई दे रहे हैं।

जिसमे की लाल रंग के टमाटर रखे हुए हैं और हरे मिर्चे दिख रहे हैं।

गांधी आश्रम खादी लिखा हुआ दिख रहा है।

रेड कलर से प्रतिभा बुक डिपाॅट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक गुरुद्वारा बना हुआ नजर आ रहा है।

जिसमे कुछ आदमी और औरतें बैठी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में एक गैराज बना हुआ दिखाई दे रहा है।

बस के आगे टु इंटू टु ए_सी स्लीपर कोच लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही हैं और कुछ आदमी भी खड़े हैं।

घास के बीच में एक पाइप भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।